यहाँ पर एक सड़क दीखाई दे रही है सड़क पे काफी सारी बसेस खड़ी हुई दीखाई दे रही है पानी भरा हुआ दीखाई दे रहा है।

ओर यहाँ पर लाल रंग का तसका साईन बना हुआ है और यहाँ पर --

खुली हुई दिखाई दे रही हैं खिड़कियां लोहे की दिखाई दे रहीं हैं मंदिर के उपर झेंडे लगे हुये दीखाई दे रहें हैं आसमान दिखाई दे रहा है जिसक रंग सफेद दीखाई दे रहा है।

अ दारवाजे पर पतेलाके पेड़ लगे हुये दीखाई दे रहे है।

पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पे दरवाजा दिखाई दे रहे है खिड़कियाँ दिखाई दे रही है दो पोलिस खडी हुई दिखाई दे रही हे।

सड़क पर एक सफेद गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है वो काफी सारे मोटरसायकले खड़े हुई भी देखाई दे रहै है चदर दिखाई दे रहा है।